यहाँ एक बहुत बड़ी दुकान है दुकान की बाजू में भी सीढ़ी है वहाँ पे भी दुकानें हैं दुकान के ऊपर लिखा हुआ है बास्किन बी आर रोबिन करके --

यहाँ पे एक झरना बह रहा है झरने से पानी आ रहा है बाजू में बहुत बड़े बड़े पत्थर है बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। दीवारों में भी कुछ बैनर लगे हुए हैं। कुछ लोग तस्वीर ले रहे कुछ लोग खड़े कुछ लोग बैठे हैं।

यहां पर टीचर बच्चों को डांस सिखा रही है। सब लाईन से खड़े होके टीचर जैसा कर रहे हैं वो बच्चे लोग वैसा कर रहे है। एक आंटी नीचे बैठी है।

यहां पे ये झंडे की तस्वीर है व्हाइट कलर की झींगा है बहुत सारी एक प्लासिक की ठैली मे झींगा रखा हुआ है बहोत ही ताजे है झींगा यहां।

पहाड़ के नीचे दो लड़के लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं खा साइड में बैठकर--

स्कूल है स्कूल में बहोत सारे बच्चे लोग ड्राइंग कर रहे हैं टीचर साड़ी पहन का बीच में खड़ी है बहोत सारे बच्चे लोग बैठकर पेंटिंग कर रहे हैं।

बाजू में गार्डन है गार्डन के अंदर बहुत सारी बाइक खड़ी है रोड पे सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ है।

एक आदमी वायर कट कर रहा है नीचे बैठ के एक आदमी जा रहा है आजू बाजू में दीवारे बनी हुई और कुछ काम चल रहा है।

एक दुकान के अंदर एक फैन है दीवारों में पीला कलर किया हुआ है बाजू में बहोत सारे सामान है मशीन रखी हुई है टी_वी रखी हुई है।

यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं दुकानों के बाहर दुकानों के नाम लिखे हुए हैं रोड पे बाइक खड़ी है आदमी लोग बैठे हुए हैं।

मैदान है मैदान के बाजू में एक पानी की पाइप लाइन है आजू-बाजू में पेड़ है बाजू में घरे भी है कुछ बने हुए हैं साइड में।

कुछ आदमी लोग खड़े हैं काउंटर पे साइड में तीन चेयर रखी हुई है पीछे दरवाजा है तीन आदमी लोग खड़े हो के कुछ कर रहे हैं।